इसमे उम मतलब बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं जिसमे छोटी छोटी पत्तियां हैं और देखने पर लग रहा है की जो आदमी हैं दोनों --

यहाँ पे बैनर लगे हुए हैं और कुछ मोटे-मोटे लोगो के यहाँ पर बहोत सारे खंभे लगे हुए हैं यहाँ पे मोटे-मोटे हैं यहाँ पर मशीन बनी हुई है जो दौड़ने के लिए यूज़ करती है सामने एक आदमी आता हुआ दिखाई देता है जो सामने दिख रहा है नीचे के साइड में --

काफी बड़ा है सामने के घर में एक अ-बिजली का खम्बा लगाया गया है जिसमे मशीन रखी गयी है बिजली की और एक पेड़ लगा हुआ है पेड़ जो है काफी बड़ा है इसके पत्ते ऊपर से बड़े-बड़े हैं आपके आजु बाजू में --

कई लोग हैं लोगों को देख के लग रहा है की कृषि उपज बन रही है यहाँ पे मलतब लोग जाते हम यहाँ पे बैनर लगाए गए हैं बहोत बड़े बड़े हैं नील कलर के कुछ लाल कलर के हैं।

यहां पर बहोत सारी बकरिया दिखाई दे रहे हैं बकरे हो है वो कुछ चर रहै हैं कुछ बकरी है और कुछ बकरा है और यहां पे कुछ बच्चे भी हैं बकरी के यहाँ पे जो दिख रहे है वो लग रहा है कि वो चर रहै हैं और जिसमे ये जो चर रहे है वो सिर्फ क्या ही है जो लोही बनाई गयी है।